वह मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ मशीन दिखाई दे रहीं हैं।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

में मुझे कुछ ऑटो दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे माधव नगर रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।